इस दृशय में भारत पेट्रोलीयम दिखाया गया है जिसका पास में एक --

इस दृशय में एच पी का पेट्रोल पम्प दर्शाया गया है।

है जो की रात के समय है यहां बहुत सी लाइटे जलाई गई है।

यहाँ इस दृश्य मैं एक पिलर पे नेशन फर्स्ट क लिखा हुआ है।

दोनों पिलर पे रेड डार्क ब्लू लाइट ब्लू तिरछा पेंट किया--